ये देखिये आपको जो बिल्डिंग दिख रहा हे ये काफी बडी बिल्डिंग हे ये देखिये यहाँ पे इसके निचे ये बिल्डिंग के निचे देखिये ये जो बिल्डिंग हे जो की ऑफिस है किसी चीज़ का।

काफी सारे लोग यहाँ पे दिख रहे सब लोग अपने स्टाल वगैरे लगा कर वगैरे लगा कर रख है किसीने चाय का रखा हे तो किसीने आइसक्रीम का रखा है यहाँ पे काफी सारे लोग है।

ये मछली बज़ार हे आप देख सकते है ये गोवा का मछली बाजार है आप देख सकते हे यहाँ पे कितने सारे फिशेस हे ये देखिये कई प्रकार के फिशेस है छोटी फिशेस हे बड़ी फिशेस है काफी बड़ी फिशेस है।

यहाँ पे मेला लगा हुआ आप देख सकते है यहाँ पे काफी मेला है और काफी भीड़ है इस मेले में कही सारी दूकान लायी है यहाँ पे देखिये ये खिलोनो कि दूकान लायी हुई है ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से खिलोने है।

ये देखिये यहाँ पे जो किसी गार्डन का गार्डन का लग रहा है ग्राउंड लग रहा है इस ग्राउंड में आप देख सकते है यहाँ पे वगैरा है डेकोरेशन किया गया है।

कोई कार्यक्रम रहा होगा इसके लिए डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पे देख सकते है झोपड़ी सी है ये देख सकते है फिश को भी डेकोरेट किया करके रखा है यहाँ पे पेड़ वगैर लगे है।

ये देखिए जो इससे लकडी काटते है ये देखिए यहाँ पे लकडी लकडी गंज रही है इस मशीन के द्वारा लकडी काटी जाती है।

और उसी के सामने सड़क पर देख सकते कितनी सारी स्कूटी पार्किंग की हुई खड़ी हुई है और इधर से देखिए लाइटिंग का वायर जा रहा है इससे इस कार्यालय के अंदर लाइट गई होगी।